येक मुझे बहुत अच्छी शानदार किसी कंप्यूटर कोचिंग का फोटो दिखाई दे रहा है।

मैं देख पा रहा हूं कि बहुत अच्छा शानदार मुझे चित्र दिखाई दे रहा है ।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

और ये रात का रात की शादी का फोटो जहां पे लाइट लगी हुई है।

बहुत ही अच्छा भी एक मैं बहुत अच्छा शानदार यहां पे फोटो देख पा रहा हूं।

और ये यहां पे हवाई जाज का फोटो जिस जो नीले रंग का सफेद रंग का है।

ये भी एक मुझे बहुत अच्छा शानदार चित्र दिखाई दे रहा है।

मेला और लगा हुआ है जहां पे नीले रंग का यहां पे छिप्प लगी हे--

और यहां पे रात का फोटो जहां पे बहुत सारे लेडीज भी है आदमी भी है--

मुझे यहां पे घड़ी दिखाई दे रही है बहुत सामान यहां पे कांच की प्लेट्स कप वगैरह--

बहुत अच्छी यहां पे लाइट लगी हुई है यहां पे साफ सफाई गुलतस्ते भी लगे हु है यहां पे फ्लोवर --

एक बहुत लाल रंग का शायद किसी ओफ्फी या दफ्तर किसी स्कूल का फोटो दिखाई दे रहा है ।

ये भी एक मुझे बहुत अच्छे शानदार खूबसूरत सा चित्र फोटो दिखाई दे रहा है ।

और ये शायद सफेद से या लाल से रंग की गौ माता यहां पे बहुत सारी मिट्टी पड़ी हुई है।

ये भी एक मुझे बहुत अच्छा शानदार सा पेड़ दिखाई दे रहा है यहां पे इस पेड़ में मैं--

और यहां पे इस फोटो में देख पा रहे हो कि किसी शॉप का दुकान का फोटो जहां पे--

और चारों तरफ यहां पे पेड़ ही पेड़ लगे बहुत बड़ी यहां पे सड़क भी है।

ये भी एक मुझे बहुत अच्छा शानदार फोटो दिखाई दे रहा है।

और यहां पे वाइट कलर का कलर हो रखा है यहां पे मुझे जीना भी दिखाई दे रहा है और यहां पे एक व्यक्ति भी है जिसने लाल रंग का बनयान पहना है यहां पे दो छेल्स भी रखी हुई है।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

और यहां पे काफी अच्छा खाना बनता होगा। यहां पे गेट भी लगा हुआ है किसी ने मुझे कल भी लग रहा है यहां पे।

यहाँ मुझे किसी बहुत बड़ी इंस्टिट्यूट का फोटो दिखाई दे रहा है जहां पे फ्लेक्स भी हैबहुत सारी यहां पे बाइक खड़ी है पार्किंग में--

और यहां पे मुझे लिखा गया मॉडल कॉलेज ऑफ़ वेटरीनरी साइंस --

जो कि हसनपुर जज्जर में हरियाणा में मेरे यही पे के मुझे यहां पे बहुत सारी बाइक खड़ी हुई है।

और यहां पे पीछे एक बहुत बड़ा यहां पे होल सा बना हुआ है लग रहा है ये शायद किसी मुझे बहुत अच्छा शानदार फोटो यहां पे पेड़ भी लगे यहां पे--

ये भी एक यहां पे मैं बहुत अच्छा शानदार सा फोटो देख पा रहा हूं जिस फोटो में मुझे दिख रहा है कि यहां पे--

यहां पे आप रेंजर साइकिल भी ले सकते हो छोटे-छोटे बच्चों की भी यहां पे मुझे साइकिल दिखाई दे रही है।

और यहां पे शानदार यहां पे मुझे पीछे भी बहुत सारी साइकल है।

और यहां पे बहुत सारी क्या बोलते हैं यहां पे गाड़ी भी है ।

इतना अच्छा रूम तो नहीं यहां पे खिड़की भी लगी हुई है यहां पे लेडीज बैग भी रखा हुआ है।

यहां पे मुझे फोटो में दिखाई दे रहा है कि यहां पे रात का फोटो जहां पे एक बहुत बड़ा गेट है।

और लगता है किसी के बहुत अच्छा का फोटो है और यहां पे लाइट भी लगी हुई है यहां पे--

कि कमओक्खे भि बहुत अच्छा शानदार सा मुझे फोटो दिखाई दे रहा है।

यहां पे मैं एक बहुत अच्छा चित्र देख पा रहा हूं और यहां पे इस फोटो में मुझे दिख रहा है कि यहां पे--

जहां पे यहां पे लोगों ने पूजा की हुई यहां पे दो बत्ती लेकिन यहां पे --

गेट का दरवाजा दिखाई दे रहा है जहां पे कांच किसी से लगे हुए हैं।

इस फोटो में देख रहा हु ये भी मुझे बहुत अच्छा शानदार फोटो दिखाई दे रहा है ।

एक बहुत अच्छी शानदार मुझे फोटो दिखाई दे रहा हैयहां पे मुझे बहुत बड़ीयहां पे दुकानदिखाई दे रही है ।

यहां पे फ्लोर भी यहां पे बहुत सारी यहां पे काफी बहुत अच्छी साफ सफाई हो रखी है यहां पे इस फोटो के अंदर दुकान के भीतर मुझे बहुत बड़ा लग र--